और यहां ऊपर कुछ व्यक्ति --

यहां पर सामने एक ए_टी_एम है।

इस टेबल के ऊपर कुछ ट्रे रखी हुई है उनमें भी सामान रखा हुआ है।

काफी एरिया लिए हुए वहां पर कुछ व्यक्ति भी घूम रहे हैं।

और सामने एक लाल कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिसपर लिखा हुआ है न्यू प्लस जिम।

यहां पर एक बाइक भी खड़ी हुई है।

यहां पर एक योगा क्लास चल रही है।

कुर्सियां पड़ी हुई है काफी सारी टेबले रखी हुई है।

और यहां पर आसपास कुछ समान भी रखा हुआ है।

काफी सारे बोर्ड लगे हुए हैं।